फूल ले के फोटो खींचा रहा है वहां पे दो अंकल आगे की तरफ जाने की ट्राई कर रहे हैं वहां पे ऊपर बहुत सारे--

छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे है बाजू में एक वाइट कलर की इको खड़ी हुई है।

उसके आउटलाइन कलर है ग्रे प्लस ब्लैक वहां पे पीछे के साइड पे मिरर रखा गया है।

यहां पे बहोत सारे एल_इ_डी लाइट्स रखी गई है य और यल्लो एंड ऑरेंज कलर की --

एक रिसेप्शनिस्ट का टेबल बनाया गया है जहां पे चेयर रखी गई है सैनिटाइजर रखा गया है।

इनमें से कुछ लड़कियों ने ऑरेंज प्लस रेड कलर का--

बना हुआ है बहोत सारे एल_इ_डी लाइट्स दिखाई दे रहे हैं बहोत।

आइसक्रीम का फुटेज बताया गया है जहां पे एक --

मछलियां सेल कर रहे है बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है उन मछली का कलर है वाइ।

डार्क ग्रे लाइट ग्रे कुछ कुछ मछलियों के मुंह में से खून निकल रहा है उसके --

आमर वाला रास्ता है पूल मे पूल के त आजू बाजू दोनों तरफ--

ब्लू कलर का टी-शर्ट एंड नीचे जींस पहना हुआ है ऑटो दिख रही है बहुत सारी बहुत सारी साइकल्स दिख रहे है।

बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है बहोत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे --

बाहर बहुत सारे बाइक्स रखी गई है एक बाइक पर अंकल बै--

स्टडी टेबल का इमेज बताया गया है जहां पे बहुत बड़ा टेबल लगाया गया है।

पोट रखा गया है। दो चेयर रखी गई है वहां पे पेन का होल्डर रखा गया।

इलेक्ट्रॉनिक की शॉप दिखाई गई है जहां पे पर्सनल --

दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे फ्रिज दिखाई दे रहे हैं कुछ दाढ़ी करने वा--

क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है बहोत सारे प्लेयर्स --

खेल रहे हैं एक विकेट कीपिंग कर रहा है एक बैटिंग कर रहे हैं एक बॉलिंग करें रहे अंपायर में बहुत सारी लाइट से दिखाई दे रही है।

कन्वर्ट करने के लिए बटन दिए गए हैं ऑन-ऑफ का। बहुत सारे कलर्स भी है ब्लैक --

बीच मे बताया गया है की चार टेबल रखे हुए है नंबर है उसका --